और ये ये लोग शायद पैसे निकाल रहे है जो --

और यहाँ से शायद बिजली सप्लाइ होतें हों।

ये लोग शायद पूजा करने भी आए हो या फिर यहाँ से --

यहाँ पे आधार भी सही हो सकता है क्यूंकी यहाँ पे लिखा हुआ है आधार केंद्र।

ये बुकें इतनी सारी देखने से पता चल रहा है कि यह बहुत ही उ-उ बुकें हैं यह लाइबरी की तरह दिख रहा है यहाँ पे एक ख-ख-खड़े हैं जो बुकस बुक शॉप होगा क्योंकी बुक इतना सारा बुक शॉप ही लग रहा है यहाँ पर।

जो भी हो ये ये सिटिज़न खड़े हैं बुक लेने के लिए।